-- ख दुकान है जिसमें शीशा का गेट है।

और उसके सामने एक पैक कीया हुआ आदमी आ रहा है बहुत सारे औरत आदमी है।

ईंटा से बहुत ज्यादा मीठे में सामने वाटरफाल है।

वाइट कलर से बाल दाढ़ी लिखा हुआ है नीचे ब्लू कलर से लिखा हुआ है।

इसमें राइट साइड में बहुत सारे ईंटा रखा है सामने के बहुत बड़े-बड़े घर हैं वाइट कलर के।

बहुत बड़े-बड़े पोल लगे हुए हैं लेफ्ट साइड पर राइट साइड में--

बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं ऊपर और राइट साइड में बहुत सारे घर है।

ये सामने एक बहोत बड़ा गेट है जिसमें बहोत सारा पेड़ का एक गेट बना हुआ--

एंड ऊपर भी बोर्ड है लिखा हुआ रा स्थान एवं परिवार कल्याण संस्था लिखा हुआ है नीचे एक औरत है।